यह एक मैदान की तस्वीर है।

और कुछ व्यक्ति इमारतों के तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

यह तस्वीर एक दुकान की है जहां पे अनेकों प्रकार की खाने की चीजें अ घ में इस्तेमाल होने वाली चीजें रखी है।

जो कि टूटी हुई है और कुछ बची है इस तस्वीर में--

यह तस्वीर फूलों की है जो की पीले रंग के हैं यह नकली पीले फूल है जिन जो गेंदे के फूल की तरह--

फ़ोन पकड़े अपनी तस्वीर ले रहा है जिसने नीले रंग की कमीज पहनी है एक हाथ मे घड़ी बांधी हुई है।

जो की बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

ऊपर काले घने बादल छाए हुए हैं।

चार पहिए जो लोग अपने घरों के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी पे--

को जांच पड़ताल कर रहे हैं और कुछ लिखा पड़ी भी कर रहे हैं।

यहां पे सूरज से चलने वाली ऊर्जा--

इस पूरी आकृति का रंग सफेद रंग है बांसुरी का रंग भूरा है।

जो ऊपर दीवार पर लगाया हुआ है दीवार का रंग सफेद है साथ में दो दरवाजे हैं आगे एक --

यह एक पुस्तकों की दुकान है यहां पे आनेको प्रकार की किताबें--

बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और बहुत सारी जगहों का नाम भी दर्शाया गया है।